और आपस मे सब लोग मिल के यहाँ पर--

ए _टी _एम अ बहुत सुविधाजनक एक क --

बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ पर जाते है नाइ लोग होते हैं जो बाल काटते है और दाढ़ी मुछ बनाते हैं।

उसी को इसमें दिखाया गया है क्रिसमस डे में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हैं।

यह दक्षिण भारत की अ श्री श्रद्धा स्टोर्स किराना दुकान है जिसमें --

यहाँ तस्वीर होटल गेटवे कर्नाटका का है लोग होटल में --

यह तस्वीर एक मैदान का है खेल का मैदान का है जिसमें दिख रहा है बोलीबॉल खेलने के लिए वो सब --

लगा हुआ हैं और साथ में बहुत सारा जो खिलाड़ी इसमें --

यहाँ तस्वीर एक लाज का है जिसमें लोग --

अपना अ कहि जाए रहते है तो जरूरत पड़ता है अपन को तो अपन एक दो दिन के लिए होटल में रुकते है और बहोत सारी अपनी जो काम है।

फल खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।